और जो लोग हैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम--

कर रहे हैं एक साइड आपको जो है कुछ फर्निशिंग वगैरह की हुई दिखेगी मकान की और एक साइड मकान बन रहा है।

यह फोटो एसी दो बड़ी बिल्डिंग्स की है जो अपनी अंडर में काफी बड़े जो है ब्रैंड को दर्शाती है।

बहुत ही कचरा वगैरह दिखाई दे रहा है ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रिज है जो एक ओर से दूसरी ओर को जोड़ता है।

ताकि जो फैक्ट्री है उसको कोई नुकसान न पहुंचे आंधी बारिश तूफान और या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से --

वातावरण दिखाई दे रहा है जो मौसम है काफी शांत और काफी जो हल्की हल्की धूप का लग रहा हैं।

ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चों के लिए फंक्शन है जिसके अंदर बच्चों की भी भारी जो है तादात यहां पे --

स्वादिष्ट मिठाइयों देखने को मिलेगी यह दुकान काफी बड़ी तो नहीं बट एक मध्यम अच्छी सी दुकान लग रही है।

दुर पेट्रोल पंप इस साइड है ये रोड के चौराहे के बीच की है जिसके आसपास काफी अलग अलग प्रकार की लाइटें --

जो है आपको जगमगाती हुई दिखाई देंगी और काफी जो है रायखेड़ी रात का समय हो चुका है।

वो सारी हमें यहां पे सामने नज़र आ रही--